यहां एक सुंदर सा पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर आसमान नजर आ रहा है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक गोल गोल सा खंभा दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला नजर आ रहा है।

दिखाई दे रहा है बीच में पानी भरा हुआ है जो कि हरे रंग का दिखाई दे रहा है।

पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पहाड़ का रंग पूरा नजर आ रहा है।

यहां एक एयरपोर्ट है जिस पर फ्लाइट खड़ी हुई है फ्लाइट का रंग नीला और सफेद दिखाई दे रहा है।